यहाँ बाल्टी में पानी भी रखा है| वहां पोड है। पोड में भी मछली है और उधर भी उकान है बहोत सारे आदमी हैं।

और उधर भी कुछ सीख रही है लड़की बुनाई-धुनाई कुछ सीख रही है।

उ स्कूल में और बहुत सारे घर भी हैं साइड साइड में। पीछे बिल्डिंग भी है। यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है। उस बोर्ड में कुछ लिखा है और चारों तरफ घेरा हुआ है।